छोटी-छोटी ग्रीन घास भी दिख रही है | आसमान भी बहुत बड़ा दिख रहा है|

एक स्लाइडर भी दिख रहा है और घर भी बने हुए दिख रहे है बहुत सारे पेड़ दिख रहे है आसमान भी दिख रहा हैं।

और रेड कलर से बॉर्डर बनाया गया है वाइट कलर की भी है| यहाँ पर कुर्सियां भी रखी हुई है लोहे की बहोत सारे लोग है जो यहाँ पे --

ये हमारी की पीक है। यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन किया गया है। हांथी बनी हुए हैं और --

और यहां पे एक झूला भी दिख रहा है। आसमान भी दिख रहा है। रोड है।

एक चैनल गेट लगा हुआ है। लोहे का सीढ़ी दिख रही है |

एक हॉस्पिटल यहां पे सी.टी स्कैन होता है। दीवार पर ग्रीन और ये --

यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर बहोत से आते है पेट्रोल डीजल के लिए--

येलो से पेंट किया गया है। येलो कलर का पर्दा लगा हुआ है|

यह एक प्लेग्राउंड है | यहां पे बहोत सारे बच्चे खेल रहे है और वहाँ पे ईंटें भी पड़े हुए है लकड़ी रखी हुई है बहोत सारी --

और टीनें लगे हुए है खंभे दिख रहे है बहुत सारी वायर है और यहाँ पे कुर्सियाँ बनी हुई हैं।